देखिये कितना सारा गाड़ियां लगके यहाँ पे जाम हो गई है।

सामान मिलता था यहाँ पर हल्दी गुंडी धनिया गुंडी मिरचाई गुंडी डिब्बा हर किसम के चीज मिलता था।

आपलोग भी आकर खरीद सकते हैं बहोत अच्छा-अच्छा कार मिलता है देखिये ये भाई साहब अ और खड़ा है जाके फोटो खींच लिए |

लेकिन अब ये घर छोड़कर चले गए है देखिये कितना अच्छा घर अभी भी घर ये टुटा नहीं है।

ये हमारे बेगूसराय में देखिये ये कितना बड़ा ये भाई साहब ये घर है ये देखिये।